और ब्रिज से कई लोग आते जाते नजर आ रहे हैं तथा नदी के --

अ शुरुआती हमें एक मेज़ दिखाई दे रहा है। मेज़ के ऊपर--

शर्ट और पेंट पहन रखा है। बाकी बच्चे चेयर के उस पार बे खड़े रखे हैं जोकि कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तथा खिड़की भी नज़र आ रही--

की एक गली दिखाई दे रही है। गली के--